यहाँ पर भी मुझे एक छत दिखाई दे रहा है उस पर बहोत सारे व्यक्ति मजदुर वर्ग के लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे है और उसको सीमेंट गिट्टी से उसको डाला बनाए जा रहा है उसके लोहे की सरिया भी निकाली गयी है और बहुत ही अच्छा --